और यहां बहोत ही झूले लगे हैं और हरे भरे घास लगी हुई है।

और यहां एक झूला स्लाइड है।

सही हैं और कुछ खराब भी हैं और यहां एक आदमी बैठा है।

मेल डॉक्टर उसे चेक कर रहा है और वहां शीशे का गेट --

गली के अंदर बहुत सारे रिक्शा खड़े हैं।

और वहां बहुत ही लाइटिंग हैं।

और फैंस लगे हुए हैं वहां बहुत ही अधिक मात्रा में पाईपे लगी हुई है।

वहां बहोत हि अधिक मात्रा में सरिए लग रहे है।

और यहां अंदर बैठने की जगह बनी हुई है वहां चेयर्स और टेबल्स पड़े हैं।